यहाँ पे कोई चीज़ का हटिया लगा हुआ है। जिसमे बहुत सारे आदमी बूढ़ा बच्चा बहुत कोई हैं।

दिख रहा है और अंदर में बहुत सारी झूलरी लगी हुई है।

जो बहुत ही सुन्दर-सुन्दर पैंटिंगे हैं।

इस रूम को प्रदान कर रहा है और एक कॉफ़ी और बर्तनों में इस पौधों को लगाया गया है जो फूल भी साइड में फरा हुआ है जो --

बाल सब सीधा कर रहा है और आगे में एक बड़ा शीशा लगाया हुआ है| शीशे के ऊपर में एक पंखा भी है साइड में अनेक प्रकार की क्रीमे रखी हुई है।